क्रिएटिंग एंड व्यूइंग इन्वेंटरीज के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे एडमिन पेज पर जाने के लिए लोगिन पेज को संशोधित करना बुक्स की सारी जानकारी निकलना बॉरो की गयी बुक की जानकारी निकलना लॉग्ड इन यूज़र्स के द्वारा ली गयी बुक्स प्रदर्शित करना
यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबन्टु वर्जन 1204 नेटबीन्स इडे 73 जेडीके 17 फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 210 आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्रोउज़र प्रयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न का ज्ञान होना चाहिए जावा सर्वलेट्स के बेसिक्स और जेएसपीएस फ़ील्ड्स का डेटाबेस और वेलिडेशन
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब नेटबीन्स इडे पर जाते हैं
मैंने बुक्स टेबल बना ली है
इस टेबल में आप भिन्न फ़ील्ड्स देख सकते हैं
मैंने इस टेबल में 10 बुक्स सम्मिलित कर ली हैं
मैंने बॉरो की गयी बुक्स को संचित करने के लिए चेकआउट टेबल बना ली है
मैंने चेकआउट टेबल में 5 प्रविष्टियाँ सम्मिलित कर ली हैं
मैंने बुक और चेकआउट के लिए एक मॉडल बना लिया है
bookजावा बुक का मॉडल है
और checkoutजावा चेकआउट का मॉडल है
अब ब्राउज़र पर आते हैं
एडमिन की तरह लॉगिन करते हैं
अतः मैं यूजरनेम और पासवर्ड में एडमिन टाइप करुँगा
फिर सिग्न इन पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि हम एडमिन सेक्शन पेज पर आ गए हैं
हम इस पेज पर वापस आएंगे
अब नेटबीन्स इडे खोलें
हम देखेंगे कि एडमिन पेज पर जाने के लिए ग्रीटिंगसर्वलेट को कैसे संशोधित करें
greetingservletजावा को देखते हैं
हम जांचते हैं कि अगर यूजरनेम और पासवर्ड एडमिन के बराबर हैं
यदि हाँ तो adminsectionजेएसपी पर जाते हैं
हमने पहले भी देखा है कि रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके अन्य पेज पर कैसे जाते हैं160
अब ब्राउज़र पर वापस जाते हैं
यहाँ हमारे पास दो विकल्प हैं
लिस्ट बुक्स के लिए हम रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे
फिर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं
हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारी बुक्स की लिस्ट है
इसमें सारी जानकारी जैसे बुक इद बुकनेम ऑथर नामे आईएसबीन पब्लिशर टोटल कॉपीज और अवेलेबल कॉपीज है
अब मैं आपको दिखाउंगी कि यह कैसे हुआ
इडे पर वापस जाते हैं
अब एडमिनसेक्शन डॉट जेएसपी पर आते हैं
यहाँ हमारे पास दो रेडियो बटन्स हैं
पहला वाला सारी बुक्स की लिस्ट है
एडमिनसेक्शन डॉट जेएसपी में हम देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म एक्शन इक्वल टू एडमिनसेक्शन है
अब एडमिनसेक्शन डॉट जावा खोलें
यहाँ यह उस विकल्प को चुनता है जिस पर हम क्लिक करते हैं
हमने लिस्ट बुक्स पर क्लिक किया
अतः क्वेरी का यह भाग निष्पादित होगा
हम बुक्स टेबल से बुक्स निकालने की क्वेरी को निष्पादित करते हैं
आगे हम बुक्स की जानकारी संचित करने के लिए अरेलिस्ट बनाते हैं
फिर हम पूरे रिजल्ट सेट को इट्रेट करते हैं
हम बुक ऑब्जेक्ट बनाते हैं
हम बुक ऑब्जेक्ट में बुकिड सेट करते हैं
उसी प्रकार हम बुक के अन्य एट्रीब्यूट्स को बुक ऑब्जेक्ट में सेट करते हैं
फिर हम ऑब्जेक्ट को बुक्स लिस्ट में जोड़ते हैं
फिर हम अरेलिस्ट बुक्स को रिक्वेस्ट में सेट करते हैं
फिर हम रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके रिक्वेस्ट को listbooksजेएसपी की ओर भेजते है
अब हम listbooksजेएसपी पर आते हैं
इस पेज में एडमिन बुक्स की लिस्ट देख सकता है
पहले हम रिक्वेस्ट से बुक्स प्राप्त कर सकते हैं
यह एचटीएमएल टेबल बुक्स की जानकारी प्रदर्शित करेगी
अतः हम पूरी बुक लिस्ट को इट्रेट करेंगे
यहाँ हम बुक की बुकिड दर्शाते हैं
उसी प्रकार हम बुक के अन्य एट्रीब्यूट्स दर्शाते हैं
इस प्रकार हम बुक्स की लिस्ट प्रदर्शित करते हैं
अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं
लिस्ट बोरोवेड बुक्स पर क्लिक करते हैं
और सबमिट बटन पर क्लिक करें
हम सारी इशूड बुक्स की लिस्ट देखते हैं
इसमें जानकारी है जैसे ट्रांजैक्शन इद बुक इद और यूजरनेम मैं इडे पर वापस आऊँगा
और आपको उस के लिए कोड दिखाऊँगा
adminsectionजावा पर जाते हैं
हमने लिस्ट बोरोवेड बुक्स पर क्लिक किया था
अतः मेन्यूसलेक्शन इज़ इक्वल टू लिस्ट बोरोवेड बुक्स स्टेप्स वैसी ही हैं जैसे हमने लिस्ट बुक्स के लिए देखी थी
चेकआउट टेबल से बॉरो की गयी बुक्स की जानकारी निकालने के लिए हम क्वेरी को निष्पादित करते हैं
फिर हम सारी बॉरो की गयी बुक्स को इट्रेट करते हैं
और चेकआउट एट्रीब्यूट की तरह रिक्वेस्ट में इसको सेट करते हैं
अब हम listborrowedbooksजेएसपी पर आते हैं
हमने रिक्वेस्ट से चेकआउट प्राप्त किया
हम सारी चेकआउट लिस्ट को इट्रेट करते हैं
और यहाँ हम चेकआउट के एट्रीब्यूट्स दर्शाते हैं
इस प्रकार हम बोरोवेड बुक्स प्रदर्शित करते हैं
अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं
बॉरो की हुई बुक्स पेज में हमारे पास एक अन्य लिस्ट है
बुक्स की वो लिस्ट जिनकी करंट डेट रिटर्न डेट से ज़्यादा हो गयी है
कोड देखने के लिए इडे पर वापस आते हैं
यह वैसे ही किया जाता है जैसे हमने बोरोवेड बुक्स के लिए किया था
इसमें फर्क सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी का है
क्वेरी में हम एक कंडीशन देते हैं return date लेस थान now आर्डर बाय transaction Id अब मैं आपको एक सामान्य यूज़र के लिए इंटरफ़ेस दिखाता हूँ
अतः ब्राउज़र पर वापस आते है
लोगिन पेज पर वापस आते हैं
मैं मधुसें से लॉगिन करुँगा
पासवर्ड में वेलकम टाइप करें
और सिग्न इन पर क्लिक करें
हमें सक्सेस ग्रीटिंग पेज प्राप्त होता है
इसमें वो बुक्स हैं जो करन्ट्ली यूजर के द्वारा बॉर्रो की गयी हैं
यह जानकारी रखती है जैसे ट्रांजैक्शन इद यूजर नामे बुक इद और रिटर्न डेट अब इडे पर वापस आते हैं
अब हम greetingservletजावा पर जाते हैं
हम इशूड बुक्स उसी प्रकार दर्शाते हैं जैसे हमने एडमिन के लिए दर्शायी थीं
यहाँ फर्क इतना होगा कि हमें लॉग्ड इन यूज़र के लिए बुक्स प्रदर्शित करनी हैं
अतः मुझे इस लाइन से यूजरनेम मिलता है
फिर इस कंडीशन के साथ कि यूजरनेम लॉग्ड इन यूज़र के बराबर है हम बोरोवेड बुक्स की जानकारी निकलते हैं
अतः हमें सम्बंधित यूज़र के लिए इशूड बुक्स की लिस्ट मिलती है
फिर सक्सेसग्रीटिंग डॉट जेएसपी में हम लिस्ट प्रदर्शित करेंगे
आपका सक्सेसग्रीटिंग डॉट जेएसपी इस प्रकार दिखेगा
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एडमिन पेज पर जाने के लिए लोगिन पेज को संशोधित करना
बुक की जानकारी निकालना
बॉरोड बुक की जानकारी निकालना
और लॉग्ड इन यूज़र्स द्वारा बॉरो की गयी बुक्स प्रदर्शित करना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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी को लिखें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
यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT इंट्रो पर उपलब्ध है
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर मन्क के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है
मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद